और इसका बाय साइड में एक तस्वीर है भगवान का साईं बाबा का इसमें एक सुंदर वाला--

माला भी लगायर और इसका इसके बगल में एक फ्लावर पॉट है।

आए दिन सब लोग तो दो क्लासमेट्स होगा।

आईते अ ये तो इनवर्टर जैसी लग रहे बहुत सारे काफी--

ये तो नॉर्मल दुकान है छोटा वाला इसमें लेस पैकेट --

ये तो करियर का बिल्डिंग है इसके ऊपर--

अ मेक इन इंडिया लायन का एक फोटो लगाया है पेंटिंग तो अच्छा दिख रहा है और ये तो--

बिल्डिंग्स दिख बिल्डिंग्स दिख रही इसमें तो काली काली लग रहे--

इधर एक कंपू एक तो कंप्यूटर में काम कर रहे एक तो --

अह इधर उधर घूम रहे।

और लाल कलर वाला भी एक गिटार दिख रहा है आधा तो दिख रहा है।

ये तो सफेद का बिल्डिंग है इसमें तो लाल कलर सफ़ेद का डिजाइन है और बाहर दो गाड़ियां हैं।

धोती कुर्ता पहेन के घूम रहा हैं और एक आदमी हैं एक औरत भी हैं।

प्लेट्स भी है प्लेट्स के ऊपर ये लगाया है।

गा गाड़ी कैफ के बाहर एक आदमी हेलमेट पकड़ के ब्लू कलर --

कालेसेटे के बाहर एक बॉक्स भी रखा है कालेसेटी का ब्लू कलर का।

ये तो नेक्स्टा कंसलटेंट है यहां तो चार लाइट्स ऊपर लगा है और एक छोटा वाला--

फैन भी लगा है यहां तो फॉक्स ये सब दीवार में तो लगया और एक व गाड़ी का--

यहां तो बहुत सारे चेयर्स हैं चेयर्स के ऊपर जो पर्दा है व्हाइट कल--

और पिंक कलर ग्रे कलर का लगा है एक बड़ा वाला फैन भी है।

ये तो नेक्सटा कंसलटेंट है यहां तो एक--

एक तो बाईबिल पढ़ रहे हैं और एक तो दूसरे को देख रहा है।